लगी हुई है और यहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं लगे हुए बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

बिजली के तार यहां बड़े लंबे लंबे--

यहां पे आप देख सकते हो ये आदमी है यहां पे नीचे--

हैदरापुर बादली मोड़ लिखा हुआ है।

और वहां पीछे दरवाज़ा लग रहा वो सफ़ेद रंग का दरवाज़ा है।

यहां पे आप देख सकते सिद्ध श्री बाबा गाजी कमल मंदिर है यहां पे तस्वीर लगी हुई है।

और यहां पे जिम की मशीन रखी हुई है।

यहां पे आप देख सकते हो तस्वीर लगी हुई है यहां पे एक किसीम का मंदिर है यह पे--

यहां पर आप देख सकते हो मंदिर है। यहां पर बहोत ज्यादा भीड़ लग रही है। यहां पर चारों तरफ पेड पेड खड़े हुए हैं। यहां पर लोग भी हैं। लोग आए भी है।

और यहां पे ये स्विमिंग पूल सा दिख रहा है यहां पे और वहां पे ये --

और यहा पे ये इसका फोन रखा हुआ है।

और यहा पे गाड़ियां भी खड़ी है और यहां पे आप देख सकते हो।

रास्ता कच्चा है यहां पे आप देख सकते--

और यहां पे आप देख सकते हो कूलर भी रखे है हुए टूटे फूटे कूलर भी दिख रहे हैं यहां पे।

कंप्यूटर भी रखा हुआ है टेप्लिकेटर भी रखा हुआ है यहां पे देख सकते हो आप--

ये दरवाजा बहोत अच्छा लग रहा है दरवाजे का कलर रंगा है।

यहां पे सीमेंट के कट्टे रखे हुए है यहां पे कुर्सियां रखी हुई है श्री राम बिल्डर्स लिखा हुआ है यहां पे।

यहां पे आप देख सकते हैं गुड ईयर लिखा हुआ यहां पे--

यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट चिल लिखा हुआ हैं यहाँ पे हुंडा पार्क दिल्ली लिखा हुआ हैं लिखाव यहाँ पार्क दिल्ली लिखा हुवा हैं यहाँ पे --

ये गाटरों पे स्प्रे भी कर रहा है ये दूसरा आदमी खड़ा है।

यहां पे आप देख सकते हो ये फूल लगे हुए हैं। यहां पे कुर्सी रखी हुई है मेज रखी हुई है और यहां पे फूलों--

बैठने की भी सुविधा बहोत अच्छी रंग बिरंगी कुर्सियां रखी हुई है यहां पे--

और यहां पंखा लगा हुआ है।

यहां पे आप देख सकते हैं।

ये मूर्तिया लगी है मूर्तियों के ऊपर हार चढ़ा रखा है यहां पे ए_सी लगी हुई है।

यहां पे आप देख सकते हो हरी हरी दरी बची हुई हैं।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

यहां पर देख सकते हो फरश टूटा फूटा फरश है और यहां पे पीले रंग की--